इनको सही कर-कर कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा।

यहाँ पर दो मूर्ति है | जो की एक छत के नीचे है और सामने की तरफ कुछ सीढ़ियां है।

यह एक पार्क है जोकि बहुत से पेड़ पोधो से सजाया गया है और यहाँ पे एक --

और यह शाम का समय है और यह जगह काफी साफ सूत्री दिखाइ दे रही है व कुछ पौधें भी बीच बीच में लगायें हैं।

जग व सॉस की बोतल रखी हुइ है। इस जगह पर अक्सर तीस से चालिस लोग रोजाना खाना खाने आते हैं ।

यह एक क्लास रूम है जहा पर काफी बेच व टेबल लगी हुई --

यहाँ पर काफी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है और एक रस्ता है। जो बोहोत ही सुंदर है और यह दिन का समय है और आसमान में बड़े-बड़े सफ़ेद बा --

जो भी मंदिर के अंदर जाने के लिए खड़े हैं और यह मंदिर काफी ऊँचा हैं और मंदिर के ऊपर कुछ ध्वज भी हैं।

ऑफिस में एक ए.सी लगा हुआ है और दीवार पर एक बड़ा दुनिया का नक्शा लगा हुआ है।

यह एक बोहोत बड़ी है जिसकी खिड़कियां कांच की हैं।

और साथ में ही दो शेर भी बनाये हुए हैं और यह एक बड़े वृक्स के नीचे है।